एक ठो पेड़ ही दिख रहा है और गेट यहां पे एक खुला हुआ--

बाहर बैठने के लिए कुछ जगह बनी हैं।

सुनहरा ब्लैक ब्लू व्हाइट बहोत ही--

कुछ परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है चारों तरफ रात के समय में--

लाइट्स लगी हुई हैं और एक व्यक्ति माइक में सामने कुछ बोल रहे हैं।

किया जाता है क्योंकि एक साइड गाड़ियां धोते हुए लोग दिख रहे हैं।

कुछ लोग कस्टमर भी आए हुए इन खेत खलिहानों के बीच में--

बड़ा सा यह हॉल जो बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई दे रहा है।

और एक जगह पर अंदर की तरफ शायद यह टाइल्स के उ हमें ढेर नजर आ रहे हैं।